जैसा कि दोस्तों आप को दिखाई दे रहा होगा की यहाँ पर दो लड़की और दो लड़के हैं जो किसी डास कॉमपीटीशन में या फिर कोई स्कूल की तरफ कोई फंक्शन है।

यहां पर स्टेज के ऊपर खड़े हैं इस शादी में बोहत सी डेकोरेशन भी है और बोहत से लोग यहाँ पर आये हुए हैं।

और यहाँ पर बहुत सी कुर्सियां यहाँ पे डली हुई हैऔर बहुत से लोग यहाँ पे आये हुए हैं।

और यहाँ पर ये कुछ बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं | यहाँ पे इनके आसपास कोई फाइल है या कोई हॉस्पिटल है।

जैसे कि यहाँ पे सामने एक भगवान की मूर्तिया भी हैं और यहाँ पे बहोत लोग आकर इंटरेस्ट ले रहें हैं और इसमें डेकोरेशन भी --

जैसे की दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं की यहाँ पर जैसे की यहाँ पर एक दूकान है और यहाँ पर दूकान के अंदर यहाँ पे एक आदमी है जो --